ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है। बहोत सारे बगल में क्रीम वो रखा हुआ है ऐनक है। ऑरेंज कलर से कलर किया हुआ है। वॉटर वाला ए.सी. रखा हुआ है। बहोत अच्छा-अच्छा सब कलर --

यह एक खेलने वाला मैदान है पास में स्कूल में बहोत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। क्रिकेट का तैयारी कर रहे हैं। बहोत सारे पेड़ हैं पास में बहोत बड़ा सा मैदान है उससे लगा हुआ है जिसमे --